घर के आस पास कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां हमें कुछ आदमी दिखाई दे रही है।

यहा हमें एक बड़ी सी पर्वत दिखाई दे रही है पर्वत में छोटी छोटी पौधे लगे हुए है और इसके आगे एक पेड़ लगा हुआ है।

और दुकान का मालिक मोबाइल दिखा रहे हैं।

एक दरवाजा दिखाई दे रही है दरवाजे के अंदर एक रेड लाइट जल रही है।

दुकान में भी एक लाइट जल रही है।

बॉक्स के पीछे भी कुछ सामान रखे हुए हैं।

मेले में कुछ दुकान्स दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट के छत पे भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग की छत पे एक टंकी रखा हुआ है ।

घर का दरवाजा फूलो से सजाया गया है।

यहां हमें एक नदी जैसी दिखाई दे रही है नदी में छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी है दोनो हाथ पकड़े हुए खड़े हैं।

पोस्टर में मोबाइल नंबर भी दिया गया है दुकान के बाहर दो टोटो रखे हुए हैं।

यहां सारे बच्चे स्पोर्ट ड्रेस में है।

होटल में रेड एवम व्हाइट कलर की बैलून सजाया गया है।

और हमें यहां ग्रीन कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है भारत का दरवाजा यहां बंद है।

गेट के बगल में हमे एक घर दिखाई दे रही है और उसके अंदर भी बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे चारों तरफ कपड़ों से घेरा हुआ है।

यहां गेट पे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है साइड में कुत्ता से सावधान लिखा हुआ है।

दुकान के गेट पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं दुकान के बाहर कुछ पौधे रखे हुए हैं।

यहां हमें पार्क जैसी दिखाई दे रही है पार्क में बहुत सारे आदमी हैं।

और यहां पे बहुत सारे पैड पौधे लगे हुए है।

यहां एक मंदिर जैसे दिखाई दे रही है मंदिर में भगवान की प्रतिमा रखी हुई है।

दुकान में एक आदमी दिखाई दे रहे हैं आदमी हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है।

यहाँ टेबल पे कुछ पेन रखे हुए हैं और टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं।

और एक वाइट कलर का दरवाजा है जहां ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ है।